कार एक चार पहिया वाहन है जिसका उपयोग परिवाहन के लिए किया जाता है। कार लोहे की कांच तांबा स्टी अल्युमिनियम जैसी विभिन्न सामग्रियों की बनी हुई होती है।

एक घर की छत बन रही है। इस छत पर शटरिंग बन चुकी है।

घर है। घर सफ़ेद रंग से रंगा हुआ है। घर में काले रंग का दो चैनल लगा हुआ है।